बहुत बड़ा सा पहाड़ी है जिसके आस पास में बहुत दूर दूर बहुत बड़ी पहाड़ी दिख रहा है।

पत्थर फेका होगा ईटा पड़ा होगा एक स्कूटी लगी हुई है और एक बिल्डिंग है जीसके ऊपर मे रा--

शीशा लगा हुआ व एक आदमी दो तीन आदमी खड़े है सिलाई कर रहे हैं सिलाई मशीन रखा हुआ हैं अलग अलग डिजाइन के ब्लाउज सिले जा--

जिसके अंदर से लोग आना जाना कर रहे हैं घर बना हुआ है और बड़े बड़े पेड़ पौधे साइड में बहुत सारे मिट्टी पत्थर पड़े हुए हैं।

यहां गमला छोटा-छोटा गमला में बहोत सारे पौधे लगाए गए हैं और नीचे में बड़े-बड़े पौधे लगाए गए हैं आसपास में हरे भरे पूरे पेड़ पौधे ही लगे हुए है।

ये बुक स्टॉल का दुकान है जहां पे बहोत सारे पेन पेंसिल रबर रखे हुए हैं डॉम्स की पेंसिल्स है रबड़ है कॉपी कॉपी है बहुत सारी कैलकुलेटर्स रख--

मॉल को दु तीन कलर से रंग किया कलर किया गया ब्लैक कलर व्हाइट और ऑरेंज से किया गया एक बड़ासा बोर्ड लगा हुआ हैं और चेयरस् लगी हुईं कुर्सिया और ट्यूब लाइट्स लगी हुईं हैं।

दुकान है टर्मी नगर डायरी डिपार्टमेंट डायरी पार्लर --

बहोत को हरा छाया हुआ है बड़े बड़े पेड़ पौधे धुंधले से दिख रहे हैं सारे--

नीचे एक वॉल पे कपड़ा रखा गया है स्टेज वाला शुट है अलग अलग डिजाइन के हैं।

पैंट कवर और टोपी रखा हुआ है बहुत सारे पैकेज में रखा गया पिंक कलर का है ब्ल्यू कलर का ऑरेंज कलर का है दो तीन आदमी खड़े है --

और उसकी मशीन के बहोत सारे अलग अलग पार्ट्स है जिसमें मोटर भी है बहोत सारे कचड़े पड़े हुए है धुंधला के पुराना गाड़ी है।

ये एक शॉप है जहां पे छोटे छोटे बच्चों के खिलौने हैं गिटार हैं कार हैं गन है।

एक बड़ा टब है बाल्टी दो तीन हैं जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे छाते भर के र--

ये एक फुटवियर जिसका नाम है शनाया फुटवेयर कंपास पार्क लेंसर आदा--

ये कुछ स्कूल है आकांक्षा स्कूल है जहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता है बोर्ड लगा हुआ आकांक्षा स्कूल का नीचे में बहुत सारे--

और झंडे छोटे-छोटे झंडे लगे है नीचे में बहोत सारे फूल के गमले है जिसमें हर छोटे-छोटे फूल में छोटे-छोटे गमले में फूल लगाए --

और दूर दूर मे बहोत सारे पेड़ पौधे हैं। बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए है। बीच मे बहोत सारे पत्थर है पानी के बीच मे।